यहाँ जगह देखिए। इस जगह पे --

और एक जेंट्स हैं जो --

ये दुकान है। इस दुकान --

काफी अच्छा लग रहा है हरा-भरा --

उधर कुछ दिखाई दे रहा है। यह काफी अच्छा लग रहा है देख कर।

से रोड है।

मसाला डोसा इडली जो भी साम जो भी खाना है वहाँ यहाँ पे मिल सकता है। पानी वगेरा --

यहाँ पे दो महिला खड़ी हुई हैं। एक महिला --